नमस्कार gchempaint में edit preferences templates और residues के tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे
प्रेफरन्स edit करना
templates संचालित करना
तैयार templates को उपयोग और select करना
new template add करना
हम निम्न भी सीखेंगे
रेज़िड्यूस residues का उपयोग और
रेज़िड्यूस edit करना
यहाँ हम उपयोग कर रहे हैं ubuntu लिनक्स os version 1204
gchempaint version 01210
इस ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए आप gchempaint केमिकल स्ट्रक्चर एडिटर से परिचित होने चाहिए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
मैंने एक नयी gchempaint application पहले से ही खोल ली है
प्रेफरेन्सेस को एडिट करते हुए tutorial को शुरू करते हैं
edit menu पर जाएँ प्रेफरेन्सेस preferences पर जाएँ और इस पर click करें
gchempaint preferences window खुलती है
पहला क्षेत्र default compression level for gchempaint files files को सेव करने के लिए उपयोग होती है
default से यह शून्य है
यदि यह शून्य नहीं है तो file gzip उपयोग करके compressed होगी
मैं invert wedge hashes अगले tutorial में cover करुँगी
gchempaint में प्रत्येक document संयुक्त theme theme रखते हैं
default theme को gchempaint ही रहने दें
अब मैं themes section में एर्रोस के बारे में विस्तार से समझाउंगी
tool box पर भिन्न तरह के एर्रोस देखें
add an arrow for an irreversible reaction
add a pair of arrows for a reversible reaction
add an arrow for a retrosynthesis step
add a double headed arrow to represent mesomery
add इन 4 एर्रोस को display area में add करें
add an arrow for an irreversible reaction tool पर click करें
फिर display area पर click करें
इसी तरह मैं display area में अन्य तरीके के एर्रोस add करुँगी
प्रेफरेन्सेस dialog box में थीम क्षेत्र से एर्रोस select करें
contexual menu खुलता है
यहाँ हम एर्रोस की length width और distance बड़ा या घटा सकते हैं
अब mouse से अप या down arrow त्रिभुज पर click करें
और display area में एर्रोस में बदलाव को देखें
अब arrow heads के बारे में सीखते हैं
a b और c की default values यहाँ प्रदर्शित होती हैं
a b और c parameters arrow heads के आकर में रूपांतरण में सहायक होते हैं
प्रत्येक को बढ़ाएं अथवा घटाएं और arrow heads में बदलाव देखें
window बंद करने के लिए close button पर click करें
display area को clear करें
सारे objects select करने के लिए ctrl + a दबाएं
edit menu पर जाएँ clear पर click करें
आगे अब सीखते हैं templates को कैसे संचालित करें
use or manage templates tool पर click करें
property dialog box नीचे खुलता है
property dialog box drop down सूची के साथ templates रखता है
list में amino acids aromatic hydrocarbons nucleic bases nucleosides और सैकराइड्स हैं
प्रत्येक item सबमेन्यू रखता है
aromatic hydrocarbons select करें और सबमेन्यू से benzene पर click करें
property पेज पर benzene structure प्रदर्शित होता है
benzene structure प्रदर्शित करने के लिए display area पर click करें
इसी तरह नैप्थलीन structure select करें और display area पर click करें
अपने आप से अन्य structures select करें और display area पर स्थित करें
अब file को सेव करें
toolbar पर save the current file icon पर click करें
save as dialog box खुलता है
file का name benzene enter करें और सेव button पर click करें
add मौजूदा template की सूची में एक now template जोड़ना सीखते हैं
toolbar से open a file icon पर click करें
files और folders वाली window खुलती है
सूची से हेक्सेन named file select करें
open button पर click करें
template के property पेज से add button पर click करें
new template property पेज खुलता है
property पेज दो क्षेत्र रखता हैname name और category category
category क्षेत्र एक drop down सूची रखता है
हम सूची से select कर सकते हैं या हम अपनी category add कर सकते हैं
text क्षेत्र में hydrocarbons टाइप करके एक नयी category जोड़ें
name क्षेत्र में compound का name हेक्सेन enter करें
display area में hexane structure पर click करें
यह new template property पेज पर प्रदर्शित होगा
ok button पर click करें
अब templates dropdown पर click करें
hydrocarbons category select करें
देखें कि hexane structure template सूची में जुड़ गया है
अपने आप octane structure को hydrocarbons category में जोड़ें
hexane file को बंद करें
file menu पर जाएँ file को बंद करने के लिए close को select करें
templates property पेज बंद करने के लिए select one or more objects tool select करें
अब रेसीड्यूज़ के बारे में सीखते हैं
रेसीड्यूज़ निम्न के लिए प्रयोग किये जाते हैं
carbon chain से सम्बद्ध कार्यात्मक समूह की प्रकृति ज्ञात करने में
कार्यात्मक समूह का structure जानने में
डेटा बेस में एक नया कार्यात्मक समूह जोड़ने में
tools menu पर जाकर edit रेसीड्यूज़ पर click करें
रेसीड्यूज़ window खुलती है
इसके पास तीन buttons हैंnew सेव और डिलीट
new button पर drop down सूची है
सूची से npr select करें
आइडेंटिटी identity टैब selected किये हुए residue के symbol और name दर्शाती है
formula टैब selected किये हुए residue के structure का ढांचा दर्शाती है
इसी तरह secondary ब्यूटाइल के लिए sbu select करें
selected किये हुए residue के symbol name और structure का ढांचा देखें
add एक नया residuehydroxy group जोड़ें
नया residue जोड़ने के लिए new button पर click करें
symbol field में type करें oh
इसे hydroxy name दें
formula टैब पर click करें
आप एक bulleted बांड bulleted bond देखेंगे
cursor को bond के पास रखें और capital o दबाएं
एक सबमेन्यू o और os के साथ खुलता है o select करें
oh group bond के साथ जुड़ जाता है
सेव button पर click करें
अब सूची को देखने के लिए new button पर click करें
देखे कि oh residue residue सूची में जुड़ गया है
अब window को बन्द करने के लिए close button पर click करें
इसके साथ हम tutorial के अंत में आ गए हैं
इसको सारांशित करते हैं
इस tutorial में हमने निम्न सीखा
प्रेफरेन्सेस preferences edit करना
टेम्पलेट्स संचालित करना तैयार टेम्पलेट्स को सेलेक्ट और उपयोग करना
एक new template जोड़ना
रेसीड्यूज़ उपयोग करना और रेसीड्यूज़ edit करना
एक नियत कार्य में templates सूची से सैकराइड्स को select और उपयोग करें
अन्य रेसीड्यूज़ जाँचें
इस url पर उपलब्ध video देखें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
online test pass करने वालों को प्रमाणपत्र भी देते हैं